क्रीम दिखाई दे रही है क्यू_आर कोड दिखाई दे रहा है तस्वीर दिखाई दे रही है ऐ_सी दिखाई दे रही है टी_वी दिखाई दे रही है मन्दिर दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसे पाइप लगा दिखाई दे रहा है सामने एक बिल्डिंग बन रही है में ईंटें पड़ी हुई है ईंटों का कलर ब्लैक एवं रेड दिखाई दे रहा है।

सा झील दिखाई दे रही है जिसमे कचरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आस-पास हरी घास दिखाई दे रही है ये सफ़ेद कलर की बादल दिखाई दे रही है। ये ब्लैक कलर --

कुछ टैंकर पड़े हुए हरे वृक्ष दिखाई दे रहे है हाँ पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है।